एक अंकल के हाथ में ढोलकी है और यहां पर कुछ ये जो है वो गा रहे हैं और पीछे सपोर्टर है।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

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक छोटी सी जगह है यहां पर कुछ दिए जल रहे हैं।